यह एक विशाल मेगा मार्ट है यहां पर स्कूटी और बाइक खड़ी दिख रहे हैं।

भगवान की सीनरी है और एक गणेश जी की सीनरी है गिलास और लोटे भी रखे हैं कुछ बाउल भी रखे हैं।

यहां पर हरे भरे पेड़ लगे हैं कुछ डहनियां भी दिख रही हैं नीचे पानी की कुछ--

यह एक औरत है उनके हेयर स्टाइल --

और लाइटें भी जल रही हैं बहुत बड़ा हॉल है।

ये एक बहोत बड़ा शोरूम है और शोरूम में --

ये एक प्लेग्राउंड है यहां पर बच्चे दिख रहे हैं सब पी_टी कर रहे हैं और पीछे--

बड़े सारे बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक फैक्ट्री है यहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं।

पास में कुछ पेड़ लगे हैं और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं खंबा है बिजली का।

अ पीछ आगे एक मस्जिद दिख रही है।

ग्राउंड है ग्राउंड में पेड़ लगा है पेड़ के पास एक झंडा फहरा रहा है फ्लैग --

यह कैफे है कैफे में चेयर पड़ी है रंग बिरंगी वाइट --

और अ ब्लैक कलर की कुछ लड़कियां भी बैठी हैं टेबल पर।

रोडों के पास बिल्डिंगें हैं पीछे भरे भरे मैदान दिख रहे हैं।

रोड है रोड पे गाड़ियां ऑटो खड़ी हैं।

बैंक का पोस्टल लगा है जिस पे बैंक ऑफ बडोदा लिखा है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान में बहुत सारे आदमी बैठे हैं कुछ आदमी खड़े भी हैं।

आसपास खूब सारे हरे भरे पेड़ लगे हैं।

दूसरी तरफ एक दूसरा और ठेला है उसमें भी एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पीछे एक बिजली का बोल्ड है।

एक बड़ा सा हॉल है वहां पर टेबिल पड़ी है।

यह एक पेट्रोल पंप है रात का समय है पेट्रोल पंप में लाइटें जल रही हैं दो आदमी भी खड़े हैं साइड में।

ये बहुत सारे कराटे के स्टूडेंट हैं।

सामने बहुत सारी बिल्डिंगे की बनी हैं और पीछे एक पेड़ भी लगा है लोग देख रहे हैं।

बड़ा सा मैदान है। मैदान में पेड़ लगे हैं बड़े बड़े।

और पास में एक ट्रैक्टर खड़ा है और पीछे बहुत सारे आदमी भी खड़े हैं ऊपर एक पंखा भी लगा है।

एक झील दिख रही है हरे-हरे रंग की।

साइड में एक कार भी खड़ी है।

और उसके आगे एक टो--

हरे भरे पेड़ लगे हैं सामने--

बिल्डिंगों के पास हरे-हरे बड़े से पेड़ लगे हैं एक ग्राउंड है बड़ा सा वहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं।

झरने में बड़े-बड़े से पत्थर हैं।

बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत सारे--

बहुत सारे पच्छी हैं तोते बहुत सारे हैं छोटे-छोटे से।

बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड में बड़ी सी--

बड़ा सा शोरूम है शोरूम के बाहर सौम्या लिखा है नीले रंग की बिल्डिंग है।

ये एक बड़ा सा जिम है जिम बिल्कुल खाली है।

और सामने एक दरवाजा खुला है और एक खिड़की है।

एक पीले रंग की बोट है वो खाली है।

एक रूम है रूम में दो रूम है और एक रूम में चेयर है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं।

बहुत सारे लोग खड़े हैं पीछे एक जीप है जीप और एक ऑटो है।

और कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।